इस दृश्य में एक होंडा की शोरूम दिखाई दे रही है जिसका नाम प्रगति होंडा है और इनमें काफी सारे बाइके रखे हुए है।

इनमें से एक बाइक का नाम सीबी शाइन है जो की काफी अच्छी बाइक है।

वह बाइक ग्रीन कलर के मैट के ऊपर रखे हुए हैं और उसके सामने काफी सारे लोग खड़े हैं।

शॉप के अंदर ऐसी भी है और एक टी_वी भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक ड्राई क्लीनर की शॉप दिख रही है जिसमें कपड़े ड्राई क्लीन किए जाते हैं।

सामने काफी सारे गमले भी नजर आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

हमने व्हाइट कलर की चादर बिछाई हुई है और नीचे कारपेट का कलर रेड है।

इस दृश्य में शोरूम का स्टोर रूम दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारी गाड़ियां भी रखी हुई है ।

इस दृश्य में एक रेलवे प्लेटफार्म दिखाई दे रही है जिसमें एक दुकान का नाम सुधा पार्लर है।

यहां काफी सारे लोग सामान लेने के लिए आए हैं।

उनमें से एक लड़के ने ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है और उसके पीछे वाले ने नीले कलर का शर्ट पहन रखा है।

इस दृश्य में एक फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा है जिसके अंदर काफी सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और दो बच्चे बैठे हुए हैं।

इसमें काफी सारे कुर्सियां भी रखी हुई है और एक बोर्ड भी है।

जिसके अंदर एक ए_सी है और ऊपर फाल सीलिंग बना हुआ है।

इस दृश्य में एक रूम दिखाई दे रही हैं जो कि लकड़ी की मदद से बनी हुई है।

याह एक बार दिख रहा है जिसमें काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी हुई है।

इसके बाहर एक इस्कूटी और एक कचड़े फेंकने वाला रिक्सा भी है।